यह एक मैदान में रखा हुआ है तथा इसके अलावा अन्य सोफे भी रखे हुए हैं।

यह एक झरना है जो बहोत ही सूंदर दिख रहा है पानी का बहाव बहोत ही तेज है।

इसके ठीक बीचों-बीच दरवाजे को खोलने के दो हैंडल बनाए गए है और नीचे सीढ़ियां दिख रही है।

यह एक चिल्ड्रंस पार्क है जिसमें बच्चों के खेलने के चीजे बनाई हुई है एक बच्चा खड़ा है और वह फिसलने के लिए --

यह एक पार्क है जिसमे बच्चों के खेलने वाली चीजे बनायीं गयी है एक बच्ची फिसलन में फिसल रही है उसके ठीक पिछे सीढियाँ है।

के प्लेट मे प्याज़ के छोटे-छोटे टुकड़े भी डाले गये है जो देखने मे अत्यंत स्वादिष्ट --